ये जो हम ये ध्रिश्य देख रहे है ये एक सडक का द्श्य है जिसके चारो दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ बने हुए है।

हम देख सकते है सड़क पे एक खम्बा लगा हुआ है और तारे ऊपर से बिजली की भी देख सकते है।

और थोड़ी दूर पे कार खड़ी है और पेड़ सड़क के इस तरफ एक बोर्ड लगा हुआ है।

और सड़क फ़िलहाल अभी खाली है इस पर कोई भी जाता हुआ नज़र नही आ रहा ना कोई वाहन जारा है ना कोई भी मनुष्य जा--

हम जो दृश्य देख रहे हैं ये पहाड़ो का दृश्य हैं देख सकते है पहाड़ो के बिच में से झरना बहत ा हुआ नजर आ रहा यानि पानी बहत ा हुआ नजर आ रा हैं।

ये हम एक पार्किंग की तस्वीर देख रहे हैं जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग यानी बड़ी बड़ी इमारतो में--

और पार्किंग की जगह है जो भी ये स्थान है बहोत ही विशाल खेरेदार बना हुआ है ताकि यहा पर एक साथ बहुत सारी गाड़िया पार्क की जा सकती है और देख रहे है की--

उस चित्र में हम देख रहे है ये एक सड़क बनी है जो के पाहड़ के बगल में बनी है।

वो एक पार्क यानि एक एम्यूजमेंट पार्क का सिन है जिस के तरफ एक संदुर अः--

ये दरिश देख रहे है ये एक बगीचे का दरिश है जो एक दफ्तर के सामने बना हुआ है।

आप देख सकते हैं बगीचे को बहुत ही गोलाई के आकार में दिया गया है और उसमें जो पौधों पेड़ पोधे है वो भी चारो तरफ गिरे हुई हैं और घास को बहुत--

ये जो द्श्य हम देख सकते है एक बच्चा खेल रहा है खेल के चकर में उसने गिलास के उपर गिलास उलटे करके रख के एक इमारत बनाने की कोशिश की है जो की बहोत अच्छा लगा रहा है देखने में।

असे हम लोग भी आपने घरो में खेलते है मोके बच्चे भी है जो ऐसे ताश के पत्तो से भी ऐसा बनाते हुए चले जाते है पर जब भी--

इस शेत्र में हम देख सकते है यहा सड़क के किनारे लोग मछली बेचने के लिए बेठे है छोटे छोटे बोरियो में रख कर मछलि बेचीं जा रही है।

और वि सड़क पर सामान बिख रहा है सड़क के किनारे और कुछ साइकिले हमे खड़ी हुई नजर आ रही है और इस तरफ--

एक साथ हमे इस चित्र में तीन चार दुकान नज़र आरही है जो फ्लोर यानी एक मंजिले के ऊपर दूसरी मंजिल पर--

जो दो तो आगे फिसल के फिसल रहे है दो पीछे वाली सीडी पर से चल कर उपर की तरफ आरे ताकि उनकी बारी भी आ सके--

बीच का कॉन्बिनेशन से पेंट किया गया और यहां का जो स्पर्श है जो संगमरमर से बना है वह भी सफेद कलर का और हरे रंग--

ताकि इस पूल के इधर से उधर जाया जा सके हम सड़क पर जाते हुए कुछ लोगो को भी देख रहे है।

और दुकानों के बाहर हमको कार और भी गाड़िया और भी वाहन नजर आ रहे है जो खडे है और सडक में फिलहाल कोई भी भीड़ नही है कोई भी आता जाता नही दिखाई दे रहा है।

ये जो ध्रिशय है ये कपड़ो की दुकान का द्श्य है यानि यहा पर रेडिमेंट कपड़े मिलाये दिखाई देते है और मिलते भी है यहा पर रेडिमेंट यानी बने बनाये कपड़े खरीद सकते है।

ये जो हम द्श्य देख रहे है यहा पर एक संगीत सिखाया जा रहा है जो संगीत के जो मा अध्यापक है वो--

और सितार और वो भी ड्रम भी रखा गया है यानि बच्चे अलग अलग तरीके से बजा बजा कर--

ये जो द्रिश है ये किसी दफ्तर का द्रिश है हम देख सकते है यहा पर खाने के टिफिन रखे गये है किनारे से यानी जब दो जो लोग दफ्तर में काम करते है।

दुकान का बोर्ड है दुकान बंद होने के बावजूद वहां पर लाइट जल रही है रोशनी की गई है इससे दुकान का जो नाम का बोर्ड है वो चमक रहा है।

टेबल कुर्सियां मिल जाएगे हमारे सामने जो एक शोरूम टाइप बना हुआ है शोरूम है ये--

जो पल्स्टिक की पानियों से पैक है यानि में ताकि वो नई की नई रह सके और उनपर धुल मिट्टी बिलकुल भी न बेठ--

इस का इंटीरियर भी बहोत ही अच्छा और बहोत ही हाई फाइव बहोत अट्रैक्टिव यानि आकर्षक है।

यहा पर हम देख सकते है ढेर सारे बच्चे यहा पर इखट्टे हुए है और बच्चो के जो माता पिता है वो भी हम को दिखाई दे रहे है जेसे यहा पर किसी स्कूल या किसी--

मात्रा में यहा बेठे हुए है जो अपने माता पिता के साथ आये हुए है और बहोत ही सुन्दर सुन्दर कपड़े उन्होंने रंग बिरेंज कपड़े पहने हुए है।